पत्थर पर आदमी बैठा हुआ है उसके पास में खूब बड़े-बड़े से पहाड़ हैं बादल का रंग सफेद --

पास में एक कुर्सी पड़ी है जो लाल कलर की है और पास में लाइट जल रही है।

एक मोटर साइकिल खड़ी हुई है। एक मोटर साइकिल पर आदमी बैठा हुआ है। एक बिल्डिंग से बहार निकल रहा हैं।

उसके हाथ में एक डंडा है। पानी में बोहोत सारे आदमीऔरत बड़े बुढे लड़के बच्चे सब खड़े हैं।